यह एक पैलेस है पैलेस बहुत सुंदर लग रहा है पैलेस में बहुत सजावट हुई हैं।

यहां पर एक काले रंग का बड़ा मेज पड़ा है।

आदमी के हाथ में ला हरे रंग का --

यहां पर स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है।

यह बच्चों के खिलौनों की दुकान है।

पर यहां पर बहुत सारी बाइके खड़ी हैं ये मार्केट में बहुत र भीड़ होती है।

यहां पर बहुत सुंदर पेंट किया हुआ है।

और मेज का रंग है ब्लैक ।

यहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है जिसका रंग है सफेद यहां पर एक--

यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुएं हैं।

पीछे एक और आदमी खड़ा है उसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी--

यहां पर अंडरगारमेंट्स मिलते है।

यहां पर एक वाटर कूलर पड़ा है जिसका रंग--

यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

जीसका नाम यू_के पिज़्ज़ा बर्गर है।

उसके ऊपर पिज़्ज़ा की पिक्चर बनी हुई है।

जिसको कपड़े पहनाए हुए हैं यहां पर बहुत प्रकार के कपड़े हैं।

बच्चे बहोत ही खुश होते हैं।